इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक जंगल का दृश्य लग रहा है जिसमें सामने की साइड दो हिरन खड़े हुए हैं तथा हिरन जो जिस ग्राउंड में खड़े हुए हैं उसमें काफी लम्बी लम्बी हरे कलर की घास है।

इस इमेज में जो दिख रहा है वो एक मंदिर लग रहा है जिसमें तीन मूर्तियां रखी है और उन मूर्तियों के सामने छोटी छोटी कई मूर्तियां रखी है।

ड्रीम कलेक्शन हिंदी में लिखा गया है ड्रीम कलेक्शन में जो फोंट यूज हुए हैं वो क्रीम कलर के लग रहे हैं।

इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक मेडिकल है मेडिकल पे एक ऑनर भी है तथा एक सामने की तरफ ग्राहक भी खड़ा हुआ है जिसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर किया हुआ है।

मेडिकल पर भिन्न भिन्न तरह की दवाइयां रखी हुई हैं जो कि सभी प्रकार के रोगों के लिए अच्छी सफिशिएंट हैं।

साथ में ही एक पेड़ भी खड़ा है जो की काफी बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वह पेड़ जो है बरगद का है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक मंदिर है तथा मंदिर के ऊपर एक चट्टान सी दिखाई दे रही है चट्टान के ऊपर एक पत्थर है जिसपर ओम लिखा हुआ है।

इस फोटो में बुलडोजर खड़ा हुआ है जो कि येलो कलर का है तथा जिस पर जे_सी_बी लिखा हुआ है।

उसे पे लिखा है स्वाद का बेताज बादशाह बाबू वोरखेल्स एंड हार्वेस्टर का नाम लिखा है।

इसमें चार पांच बसेस साइड से लगी हुई है बसेस के सामने एक केले वाला केला बेच रहा है।

इस दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वो है फुटवियर की दुकान है जिसमें काफी सारे फुटवियर रखे हुए हैं।

सामने की साइड में दो बोर्ड भी है एक ब्लैक बोर्ड है और एक व्हाइट बोर्ड है।

जोकि औरतें भी दिख रही हैं साड़ी पहने हुए हैं और कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि आदमी हैं जो की कुर्ता पजामा पहने हुए हैं नारंगी कलर का।

कोने की तरफ एक ब्लैक कलर का ऑटो खड़ा है जिस पर अतुल लिखा है अतुल लिखा हुआ वाइट कलर से है तथा उसके पास में एक आदमी खडा है।

इस फोटो में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर एक बंदा अपनी कटिंग करा रहा है।

तथा इमारत की जो रंगाई पुताई है वो भी नीले कलर से की गई है इमारत के सामने एक बाइक और स्कूटी खड़ी है तथा तीन से चार लोग खड़े हुए हैं।

जो की हाफ टी शर्ट पेहने हुआ है टी शर्ट का कलर व्हाइट तथा हाफ कैपरी पेहने हुआ है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो किसी मेले का दृश्य है जिसमें कई सारी लेडीज बैठी हुई है।

इस इमेज़ में जो दिखाई दे रहा है वो एक बहुत पुराना मन्दिर लग रहा है तथा मन्दिर जो है वो पूरा पत्थर का लग रहा है।

सबसे टॉप फ्लोर पर कश्यप क्लिनिक लिखा है और उसके सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर बी के कश्यप लिखा है तथा सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कश्यप क्लिनिक लिखा हुआ है।

और सभी फोंट येलो कलर में यूज किए गए हैं बिल्डिंग के सामने एक इलेक्ट्रिसिटी पोल भी है जिस पर तार गुजरे हुए हैं।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वह कोई ऑफिस या कोई कारखाना है। तथा जिसके सामने कई सारी स्कूटी और बाइक्स खड़ी हुई है।